यह एक मंदिर है मंदिर में कुछ मूर्तिया लगी हुई है वहां पर कोई माताजी की मूर्ति है।

सामने छोटे-छोटे गमले दिख रहे हैं हरे पत्ते दिख रहे हैं और एक दीवार दिख रही है जिस पे टाइल्स लगी हुई है जमीन है जिस पर टाइल्स लगी हुई है उसके पीछे बहोत से पेड़ दिख रहे हैं।

माइक दिख रहे हैं। टेबल दिख रहा है। पीछे फैन्स दिख रहे हैं। एल.ई.डी. दिख रहे हैं।